ये भी पुराना मंदिर टाइप का दिख रहा है या दरवाजा दिख रहा है देखिए यहाँ पे सुखी पत्तियाँ दिख रही हैं।

मस्जिद दिखाई दे रही है जो की बहुत पुरानी है उसके ऊपर बेल की लत्तर चढ़ी हुई है और देखिए तीन --

पेंट के कारण बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है इससे डिजाइन अच्छा है पेंट हो जाए तो और अच्छी दिखने लगेगी और एक ये सामने का घर टाइप का भी दिखाई दे --

ये किराना जनरल स्टोर है यहाँ पे देखिए बैग्स टंगी हुई मास्क टंगी हुई है।